इसे एक टोपी पहना हुआ है। टोपी बाय लिखा हुआ है। तीन से चार कैमरा यहां लगाए गए हैं और साउंड बॉक्स भी यहां रखे हुए हैं।

बाहर के साइड में बहोत बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

यहां पास एक इंसान छत के ऊपर बैठा हुआ है और इसे प्लाई से ढका जा रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे रूम के कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे यहां शटर भी लगाए गए हैं।

इस फोटो पे मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप के नीचे साइड बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं साथ में यहां पास --

यहां पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं एक इंसान सिलाई मशीन से--

बर्फी रखी गई हैं यहां पास इसे कांच के गिलास के अंदर रखा गया है यहां पर तीन से चार फ्रिज रखे गए हैं यहां कुछ लोगों इसे खरीद रहे हैं।

बादल भी छाए हुए हैं चारों ओर बहोत सी लाइटे लगाई गई हैं यहां पास तीन से चार लोग बाहर बैठे हुए हैं।

इस फोटो पे मुझे एक हार्डवेयर की दुकान दिखाई दे रहा है जहां पास बहोत से पेंट बाहर रखे गए है कुछ अंदर रखे गए है बाहर के तरफ एक इंसान खड़ा हुआ है।

इस फोटो में मुझे बहुत से दो जूते दिखाई दे रहे हैं जूते का रंग हरा कलर का है।

यहां पास बहोत से लोग बैठे हुए हैं।

इस फोटो पे मुझे एक बच्चा झूला में झूलते हुए दिखाई दे रहा हैं साथ में बहोत सारे यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और यहाँ कांच के ग्लास भी लगाए गए है यहाँ बहोत से पेड़ भी लगे हुए है एक बाहर बहोत बड़ी जाली पे एक पेड़ लगाया गया है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे टैंक दिखाई दे रहे हैं साथ में यहां पास कुछ पानी के कंटेनर को भी रखा गया है।

तरह के पंखों को भी लगाया गया है यहां पास वो बैठने के लिए कुर्सियां भी रखी गई है।

बहोत से लोग खड़े हुए हैं यहां तीन से चार कैमरे भी लगे हुए हैं बाहर की तरफ में दो साउंड लगाए गए हैं।

यहां पास आम के पेड़ भी लगे हुए हैं यहां बहुत से घर भी बनाए गए हैं।

इस फोटो पे मुझे एक सर्जरी रूम दिखाई दे रहा है बीच में एक बहुत टेकनीकोलिक --